यह एक क्लिनिक है यह क्लिनिक काफी बड़ा है।

यह सड़क काफी बड़ा है यह सड़क का एक बाइक लगी है ।

यह एक घर है यह घर के बाहर बहुत ही बड़ा गेट लगा है ।

यहाँ पर तरह-तरह के फूल बिके जाते हैं ।